पेड़-पुड़ भी लगा हुआ है बगल में गुलाब का भी पेड़ है।

आदमी भी खड़े है। भी लगे है।